यह झरना का पानी बहुत अच्छा है हुआ है।

यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है | ये लोग अपने काम कराने आते है ।